फूलों से सजा हुआ मंदिर बना हुआ है वहां पे दो बड़े बड़े केले के--

यह एक ग्राउंड कादरी से है ग्राउंड में टेंट लगा हुआ है टेंट में रंग बिरंगे बैलून सजे हुए हैं।

पहाड़ के ऊपर बहोत सारे महिला पुरुष बच्चे हैं यहां बहोत बड़ा बड़ा चट्टान भी है।

इस दुकान में एक घड़ी भी लटकी हुई है।

यह एक कमरे का दृश्य है कमरे की दीवार का कलर ब्लू है और नीचे टाइल्स बिछी हुई है इसकी दीवार पर रंग बिरंगे फूल से सजे हुए हैं और रंग बिरंगे--

रोड के इस साइड एक मोटरसाइकल है और बहोत सारे दरवाजे रखे गए हैं।

दीवाल के ऊपर स्टील की पाइप भी बनी हुई है।

चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं चारों तरफ हरियाली ही है नीचे में छोटे छोटे घास और झाड़ियां भी है इस ब्रिज के ऊपर बहुत सारे व्यक्ति भी --

योगा करने वाले और जिम करने वाले मशीने रखी गई--

यहां इसकी दीवार पर एक एल_सी_डी भी टंगी हुई है।

स्टेज के सामने बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ है कुर्सी पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे--

यह एक रूम का दृश्य है रूम आसमानी कलर का है रूम के ऊपर में करकट लगा हुआ है।

गैस रखे गए हैं यहां एक फोर व्हीलर खड़ी है और यहां एक मोटरसाइकिल भी है और बेंच कुर्सी भी लगे हुए हैं।

यह एक रूम का दृश्य है रूम आसमानी कलर का है नीचे सीमेंट का पलस्टरा किया हुआ है इस रूम में एक टेबुल रखा हुआ है।

यहां एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ भी है।

गाड़ी के बगल में एक मिट्टी का घर है।

खिड़की बने हुए हैं घर के नीचे दुकाने खुली हुई है दुकानों में शीशे के गेट लगे हुए हैं।

और बहुत सारे दरवाजे भी है बिल्डिंग के आगे एक छोटा ग्राउंड है ग्राउंड में फोर व्हीलर खड़ी है और बाइक भी खड़ी है नीचे में छोटे छोटे घास भी है बिल्डिंग में सीढ़ियां लगी हुई है सीढियों में।